कार खड़ी दिखाई दे रही है चित्र के अंदर बाइक दिखाई दे रही है।

पोस्टर का नाम विष्णु साहू जय ज्वाला दिखाई दे रहा है चित्र के अंदर स्कूटी दिखाई दे रही है।

चित्र के अंदर बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग में खिड़की दिखाई दे रही है।